एक गुफ्फा जैसी दिखाई दे रही है। जिसके अंदर पत्थरों की चट्टानें पत्थरों बहुत सारे कलर की दिखाई दे रहे है कुछ गुलाबी चट्टानो के ऊपर कलर कही कही ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है।

स्टील की रेलिंग लगी हुई है कथेई कलर के नीचे मार्बल लगे हुए ग्रे कलर के भी मार्बल लगे हुए बड़े बड़े खंबे है जिनके ऊपर सफ़ेद कलर का पै --

एक बहुत बड़ा पुराना सा पत्थरोंका अह बना हुआ है जिसमे बड़े-बड़े खंबे लगे हुए है एक आदमी दिखाई दे रहा है जो की अंदर है सामने से एक रोड बना हुआ है आस पास बहुत सारी घास--

ऊपर से गोल गोल सी कत्थई कलर की दिखाई दे रहा है उसका कलर कत्थई है नीचे जमीन को कुछ डोरिया दिख रही है।